खम्बा केला लगल हे सेब लगल हे।

और बोरिया पर बिछा कर के --

सीढ़ी पर चढ़ करके अंदर जाना है।

एक हार्डवेयर दुकान से फोटो लेले है।

सीढ़ी से ही चढ़ के गए है।

और धुप के कारण ओकर चश्मा चमक रहल ये पूरा।